एक बहोत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके चारो तरफ एक चबूतरा सा दिखाई दे रहा है।

स्टेशन की जमीन दिखाई दे रही है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर से।

कन्याएं खड़ी हुई हैं। बोहोत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं।

कुछ पेड़ हैं एक दो

आ दो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

कुछ और पेड़ दिख रहा है एक। एक टीन की टपरी लगी हुई है एक कमरा सा दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

उसमे ए वन एंड जी भी लिखा हुआ है।

अ लाइटे लगी हैं कुछ एकाद पेड़ दिखाई दे रहा है। नीचे हरे रंग का कारपेट है।

एक बड़ा सा खंभा लगा हुआ है उसपे कई सारी लाइ तारें दिख रहीं हैं।

एक लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। एक या दो --